यहाँ पर एक नदी है। नदी में बहुत से पक्षी दिखाई दे रहे हैं जैसे गिद्ध टाइप के बड़े बड़े पक्षी है जो पंख फैला कर नीचे की और नदी में आ रहे हैं।

कुछ पानी के ऊपर है और येलो कलर का दिखाई दे रहा है सामने इसके पानी साफ दिख रहा है।

यहाँ पर हम एक मैदान देख रहे हैं मैदान न हल्का पत्थर कलर का मैदान दिखाई दे रहा है सड़क है कि रोड है।

यहाँ पर सड़क दिखाई दे रही है सड़क के किनारों पर गाड़ी घर मकान दिखाई पड़ रहे हैं और एक हरा-भरा पेड़ भी दिख रहा है एक साइड में एक जो है साइड में खम्बे के आगे पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हम बहुत बड़ा सा हाल देख रहे हैं । हाल में एक स्टेज टाइप की बनी हुई है जिस पर हरे पीले सफेद ब बैलून दिखाई दे रहे हैं ।